इ बहुत ही सुंदर नजारा दिख रहा है इसमें दिख रहा है हरे भरे पेड़ पौधे है बड़े-बड़े पत्थर है चट्टान है पक्षी बैठे हुए हैं एक पौधा भी है और हरे-भरे बहुत प्रकार के पौधे हैं।

अर्थात त गेट को बहोत ही सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट किया गया सजाया गया।

और अच्छे से इसको लगाया गया है दोनों के ऊपर हेलमेट है और पीछे हरे-भरे पेड़ पौधे है पहाड़ है।

आ दिख रहा हैं रोड के किनारे गाड़ी को स्टैंड किया गया है जो की बहुत ही सुंदर न लग रहा है दिखने में दोनों गाड़ी आकर्षक हैं।

जो कि दिखने में बहुत अच्छा है इसको शहर से जोड़ने के लिए ये एक रास्ता --

यहाँ बैठने की सुविधा है अ मालूम पड़ता है कि यह रेस्टोरेंट है झरने झरना आदि लगे हैं।

यह एक मंदिर है जिसके बाहर माता काली की आदि भगवानों की मूर्ति लगाया गया है।

जो कि श्रद्धालु यहाँ आते हैं दर्शन करते हैं बहुत ही स्वभाव मन से।

जिसमें आयुर्वेद के सामान मिलते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिससे बालवाड़ी पंख वगैरा मिलते हैं कैंची वगैरा यानी लगभग सारी प्रकार की समान जहाँ उपलब्ध है।